बहोत सारे बुका हैं पेना है पेंसिल रबड़ भी है बाजू वॉल भी--

बहुत सारी टीचर भी खड़े हुए हैं यहां पे बहुत सारे बेंचे डाले गए हैं यहां पे लेडीज हैं।

येलो कलर यहां पे अदमी भी है बड़ा सा ये गोदाम है शटर मारा गया है इसको--

ए बाजू बढ़ा सा लाइट का खम्भा दिख रहा है जाते हुए दिख रहे हैं सामने थैला पड़ा हुआ है टंगी हुई पड़ी है कचड़ा भी पड़ा हुआ है बाजू में बहोत सारा घरा हैं।

यहा पे बड़ा सा इंस्टीट्यूट है बाहर बड़े बड़े काले गेटां दिख रहे है।

ये एक कार की दुकान है यहां पे इसके ऊपर--

लाइटर डाले गए हैं बहोत सारे निचे भी लाइटर डाले गए हैं और नीचे बहोत सारे शटर --

उखड़े फतरे कचरा गिरा हुआ हैं बाहर अंदर बेंचेस भी है बैठने के लिए।

और यहां सामने बहोत सारे रंगोली बहोत सारे फ्लावर बहोत सारे कलर्स यूज किए गए--

यहां पे बायो डस्टबिन भी रखा हुआ है। कैमरा है। मीटर है। फूल के हारा डाले गए--

बाहर टायर्स यहां पर भी रखी हुई है सामने कचरा गिरा हुआ है --

अह बैग हाउस है यहां पे बच्चों के बड़ों के सभी के यहां पे बैग्स मिलते हैं।

यहां पे सभी बैग्स यहां पे अवेलेबल है यहां पर अलग अलग कलर के बैग्स हैं--

बाहर फतरे है टाटा साइकिले खड़ी हुई है झाड़ा लगाए हुए आजू बाजू बड़े बड़े यहां पे--

ये यहां पे खिड़की खड़ी है ल लकड़ीयां की और यहां पे बड़ा सा फोकस है लाइट टीसीया--

दिख रही है बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े यहां पे झाड़ा हैं।

पड़ी हुई है सामने बेल उठी हुई है मट्ठी पड़ी हुई है और लेफ्ट साइड में चॉकलेटी कलर की में--